इसमें एक आदमी का स्टेचू दिखाई देता है।

इसमें एक लड़की दिखाई देता है।

इसमें बहुत सारा आदमी दिखाई देता है।

रूम का वॉल पिंक है।

इसमें ही ट्यूबलाइट जला हुआ दिखाई देता है।

इसमे एल_जी माइक्रोवॉब्स भी दिखाई देता है।

इसमें गेट दिखाई देता है।

इसमें सोलर पैनल दिखाई देता हैं।

इसमें लीलाबारी लिखा हुआ है।

इस बिल्डिंग का वॉल व्हाइट से पेंटिंग किया हुआ हैं।

इसमें एक वाइट स्लीपर दिखाई देता है।

ये एक प्रिंटिंग ऑफिस है लेफ्त वॉल का कलर येल्लो है इसमें विंडोज हैं।

इसमें टावर दिखाई देता है।

इसमें टेबल ब्लैक कलर में दिखाई देता है।

इसमें टिशू दिखाई देता है।

इसमें शहनाज हुसैन लिखा हुआ दिखाई देता--

इसमें एक रेड कारपेट है।